लड़के की लड़कियों की कपड़े यहां पर मिल जाते है।

यह एक बस स्टेंड है।

लोग आते हैं इन झूलों में घूमते हैं ।

यहाँ पे तरह-तरह की मशीनें होती हैं जिससे लोग कसरत करते हैं।

और काफी लोग भी आए हुए है।

और बहुत सारे बच्चे रोज पढ़ने आते हैं।